दुकान का नाम अक्षत्र माल है और एक फैशन की दुकान है दुकान का कलर व्हाइट और ब्लैक है।

ये इमेज एक बस स्टैंड की है बस स्टैंड पे ब एक दो बसे खड़ी हुई है और इसके साथ ही बस स्टैंड पर आदमी आ जा रहे है।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

जे इमेज एक दुकान की है जे दुकान मोटरसाइकिल की है इस दुकान के बीच बहुत सारे मोटरसाइकल खड़े दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक घर दिखाया जा रहा है और इमेज को देखने से पता चल रहा है कि जे घर अभी पूरा बना नहीं है इसको बनाया जा रहा है।